जैसा की हम इस फोटो में देख रहे है यह एक गार्डन है यहाँ बच्चे खेल रहे है और यहाँ बहोत --

मयूजिक शॉप है फैशन की शॉप है और भी बहोत सी शॉप दिख रही है।

जो गाड़ी पर्चेस कर रहे है बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और कार भी--

नदी में नाव है नाव में झंडे लगे हुए है और नाव में बैठे हुए है लोग और आस-पास भी लोग है।

जैसा की हम इस फोटो में देख रहे है यह एक स्टील के गिलास है जो की बहोत से है।